डम्बल्स पर हरा पीला कलर हुआ रहा है और हमारे देश भारत का फ्लैग सामने नजर आ रहा है जो बोहोत खूबसूरत लग रहा है।

ये काफी सुंदर नज़ारा है जहाँ पर उ फूलों से सजाई हुई कुछ उ--

ये कितना सुन्दर फोटो है जोकि बबल्स लगे हुये हैं| ब्लू और व्हाइट जोकि बहुत अच्छे लग रहे हैं।

सामने कुछ इस्लाम आय मूवर्स नाम की कोई शॉप है और यहाँ पर सिलिन्डर रखा हुआ है जिसमें नली निकली हुई है।

ये काफी मेहनती बच्चे नजर आ रहे हैं।